यह पिक्चर बिहार के महापर्व छठ का है।

यह एक तालाब है जिसके दोनों ओर पेड़ लगे हैं ।

यह एक होटल है | होटल का नाम स्वर्ग है ।

ये देखने में काफी खूबसूरत है इसका भी काफी बेहतरीन है।

और साथ में जॉगिंग करने भी आते है।